कांच का दरवाजा नज़र आ रहा है उसके पास में एक और डक नज़र आ रहा हैं।

दराज़ नज़र आ रहा है जिसका दरवाज़ा हरे कलर का है |

उसके पीछे एक दीवाल पर अलमारी बनी हुई है जिसके अंदर --

सफ़ेद शर्ट ब्लैक पेंट पहनी हुई है। एक ने चेक्स की शर्ट पेंट पहनी हुई है।

ऑरेंज कलर पुता हुआ है और गेट खुल्ला है उसपे एक ताला लगा हुआ है |

उनका एक पैर ऊपर की ओर एक पैर नीचे की ओर है।

जिनके ऊपर रस्सी बंधी हुई है।

उसके हाथ मे एक थैला है उसके --

उसके ऊपर भी बहुत सारी किताबें रखी हुई है बहुत सारी सारी चेयर लगी हुई है दुकान के अंदर जिनमे बहुत सारे बच्चें बैठे हुएं हैं |

उनमे में से कुछ कपड़े हंगेर में टंगे हुए है तो कुछ रखे हुए है।

सामने की दिवार पर हमे एक पंखा लगा हुआ नज़र रहा है उसके पास में एक घड़ी लगी हुए है |

एक आदमी बैठे हुए हैं जिसने अपने गले में गमछा लपटेवा है।

सामने बहुत सारी स्लाइड दिख रही है जो टनल के समान है।

उसके पास थैली में चटनी रखी हुई है |

जिन्होंने टी-शर्ट और लोअर पहनी हुई है।

वहाँ पर आदमियों ने कुछ शोलें ओढ़ी हुई है।